उन्हें कितना मज़ा आ रहा होगा और ये साइड में फव्वारे कितने अच्छे लग रहे हैं स्विमिंग पूल में इसका पानी स्विमिंग का कितना हद तक साफ़ सुथरा है।

और इसपे फूल वगेरा कितने अच्छे लग रहे हैं इसपे तो गुलाब का फूल गेंदे का फूल और ये रोज कितने बढिया लग रहे है।